एक अंकल बैठे हुए हैं सरदार एक टेबल लगा हुआ है तीन कुर्सी हैं बैठने के लिए।

ये कव्हर कर खड़ा हुआ है। वाइट कलर का हेलमेट लगा हुआ है उसके सर पर और--

एक बैंक का इमेज है जूनियर बैंक का--

एक रूम है जिसमें एक कुर्सी लगी हुई है और हेडफोन्स टंगे हुए हैं।

जहां पर कुछ लोग दर्शन के लिए खड़े हुए हैं लाइट्स लगी हुईं हैं मालाएं लगी हुईं हैं।

इस इमेज में एक एजेंसी दिखाई दे रही है।

कार केयर की दुकान है प्राईम कार केयर --

एक सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है और एक लैपटॉप पड़ा हुआ है टेबल पर--